डब्लू एक लाइटों और एक ओशियन ग्रीन टाइप का और फिर ट्री दिख रहा है एक ग्रीन ट्री और ऑरेंज और ग्रीन ट्री --

और इसके ऊपर में कांच लगे हुए हैं और कम से कम चार छड़ नजर आ रहा है छड़ और दो टंकी उसमें दूसरे घर का वाइट और ब्लैक --

एक पूल पार्टी वाला एरिया नज़र आ रहा है एक फॉर्म हाउस जैसा यहाँ पे एक पूल पार्टी हो रही है बहुत सारे लोग है यहाँ पे।

कई सारे लोग व्हाइट कलर का कपड़ा पहने हुए हैं और ऊपर में वो कंस--

रेड मैरून टाइप के कलर का--

और यहां पे मैं वाटर फिल्टर को देख री हूं।

अनार है पीछे ऑरेंज है और भी बहोत सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं ग्रीन कलर --

मुझे एक पंडाल जैसे नजर आ रहा है मंदिर जैसा इसमें दो मूर्ति है किसी देवी की ओ--

मैं एक इमेज को देख रही हूं।

बाॅटल चढ़ाते हैं जिसमें बॉटल टांगते हैं उसको स्टैंड को देख रही हूं जो खिड़की को--

खिड़की पे मनी ऑर्डर और स्टेशन हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है।

जिसमें खिड़की है जिसमें ब्राउन कलर का पर्दा लगा हुआ हैं।

जिसमें बहोत सारे टेडी बियर्स हैं कलरफुल --